यहां पर एक बोहोत ही बड़ा मकान है जिस पे गुलाबी और पीले रंग का पेंट हुआ है। इसकी खिड़कियां नीले रंग की हैं। सभी लोग उसके तरफ देख रहे हैं। वह घर बहोत ही अच्छा सजा है।

यहाॅं पर एक शादी का प्रोग्राम है जो कि बोहोत ही अच्छा सजा हुआ है इसका मेन गेट हरे तथा लाल रंग से सजा हुआ है जो कि बूंदी -बूंदी बोहोत ही अच्छा लग रहा है।

यहां पे फल की बहुत सारी दुकाने हैं तथा अलग-अलग फल दिखाई दे रहे हैं। यहां पे एक आदमी भी जा रहा है और जो व्यक्ति --

यह दुकान काफी पुरानी लगती है। इसमें सारा सामान दिखाई दे रहा है। यहां पे तीन आदमी खड़े हुए हैं।

यह एक खेल का मैदान है जहाँ पे बहुत से बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे गोले बनें हुए हैं जिसके बीच में कुछ रखा हुआ है। उस पे बच्चे कूद रहे हैं इधर-उधर यहाँ पे बाउंड्री है।

यह नज़ारा एक रिलायंस पेट्रोल टंकी के साइड का है। यहां पर रिलायंस लिखा भी है तथा रिलायंस क कंपनी का लोगो भी लगा है।

यह मॉल काफी ही बड़ा दिखाई दे रहा है सामने ही बॉक्स ऑफिस भी है।